और ये कौन-सी मछली है।

ये कोन से भगवान की मूर्ति शायद गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और ये क्या जगह है। कोन सी जिम है ये ये भी नहीं समाज आ रहा --

और यहाँ पर देखिये कुछ और भी पहाड़ियाँ जैसी बनी हुई हैं । कुछ पेड़ भी है ।

ये सामने एक गड्ढे में पानी सा भरा हुआ है और क्या बना हुआ है। पता नहीं क्या पता कुछ पता नहीं चल रहा --